रक्त मरे हुए हैं बहुत ज्यादा कुछ पड़ा हुआ है इसमें--

दरख़्त लगे हुए हैं गाड़ी सही हो रही है टायर पड़ा हुआ है पानी का प्याला पड़ा हुआ है।

बनी हुई है मिट्टी को उठा रहे हैं।

वो फूल बने हुए बहुत ज्यादा--

ये घर है जिस पे कलर का पेंट हुआ है बार लिखा हुआ है ।

इतना कुछ लगा हुआ है इसमें।

बोतले सकले खड़ी हुई या गाड़ी खरी हुई --

ओर उधर से लडके आ रहे क्रिकेट खेले बहुत ज्यादा--

आदमी दिखा रहा है बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है।

कच्ची कच्चा मकान है ईंठे भरी हुई है बहुत ज्यादा--

सिल्वर कलर की ये गाड़ियां जा रही है सामने इमारत बनी--

डिब्बे डिब्बे मे भी भूत बने हुए हैं डिब्बे को बंद किया हुआ है।

नीचे गाड़ी वाला बच्चा गाड़ी चला रहा है गाड़ी वाला--

से आदमी आ रहा है लाइटें लगी हुई है आज--

गोश्त पड़ा हुआ है वो सामने से आदमी आ रहा है लेने के लिए गोश्त--

लाइटें लगी हुई है इतना ज्यादा घोष पड़ा हुआ है।

लोग नहाने के लिए आते हैं इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं साथ--

पारक हैं उधर बच्चे झोले ले रहे हैं इतने ज्यादा --

एक आदमी बाइक पे बोर्ड है लोग उसको सोने नहीं है बहुत ज्यादा।

कपडा भी लाइट लगी हुई है घड़ी है ए_सी है पंखा लगे हुए है सामने से औरत आ रही है।

बच्चों के पेपर वगैरह भी पड़े हुए है खाने वाली चीजों पे--

क्रिकेट खेल रहे है घर बना हुआ है बना हुआ है गमले पड़े हुए है ये भी।

और पानी पड़ा हुआ है पानी की बोतल पड़ी हुई है टेबल पे टेबल पे भी --

देख रहा है खाना खा रहा है सामने से आदमी खाना लेके आ रहा है कुछ रेस्टोरेंट ।

केक वाली दुकान में एक आदमी मोबाइल लेके दुकान पे खड़ा है मोबाइल देख रहे हैं का --

ये भी जो इस पे लड़का अकेला काम कर रहा है गाने लगाया हुआ उसने सामने से।

चल रहा है चक्कर लगा रहा है एक आदमी बैठा हुआ है।

साथ पेट्रोल पंप है उसमे पेट्रोल डलवा रहे है लोग और ये।

हर जगह भूत है ये वाला भूत भी है तेरे भूत है लोग --

काम कर रहा अपना अंदर से आदमी से आदमी है वह भी अपना काम कर रहा है कुर्सियां पड़ी हुई है साइड पे खाली ।